नमस्कार दोस्तों
लिबरऑफिस राइटर पर ट्यूटोरियल डॉक्युमेंट में संपादन के समय ट्रैक में बदलाव में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं समझाऊँगा कि लिबरऑफिस राइटर में डॉक्युमेंट का पीयर रिव्यूसहकर्मी समीक्षा कैसे किया जा सकता है
हम एक मौजूद डॉक्युमेंट को खोलेंगे समझाने के लिए कि रेकॉर्ड चेंजों का उपयोग करके डॉक्युमेंट का संपादन और पीर रिव्यू कैसे करें
इस विशेषता के उपयोग का लाभ यह है कि समीक्षक मौजूद टेक्स्ट में टेक्स्ट जोड़ सकता है टिप्पणी कर सकता हैडिलीट कर सकता है या बदलाव कर सकता है
जो कि समान डॉक्युमेंट में स्पष्टतः दिखाई देता है
यह लेखक द्वारा आसानी से देखा जा सकता है जो इन बदलावों को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है
तथा इस प्रकार फिर से बदलाव किये बिना इन संपादित टिप्पणियों को समाविष्ट कर सकता है
और जब फाइल सेव हो जाती है टिप्पणियाँ समाविष्ट हो जाती हैं
अतः सीखते हैं कि यह सब कैसे करें
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स 1004 और लिबरऑफस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियम में मैं कुछ डॉक्युमेंट्स का उपयोग कर रहा हूँ जो मैंने पहले ही बनाये हैं और मेरे सिस्टम में सेव किये हैं
जैसे कि seven reasons to adopt fossओडीटी government support for foss in indiaओडीटी राइटर में शुरूआत के लिए एप्लिकेशंस आफिस और लिब्रियोफिस राइटर पर क्लिक करें
seven reasons to adopt fossओडीटी को खोलें
रेकॉर्ड चेंजों ऑप्शन को सेट करने के लिए एडिट → चेंजों पर जाएँ और रेकॉर्ड ऑप्शन चुनें
शो ऑप्शन भी चुनित होना चाहिए
यह किसी भी आगामी संपादन को स्पष्टतः रिकार्ड करने के लिए सक्षम हो जाएगा
हम बिंदु क्रमांक 2 पर जायेंगे और टाइप करेंगे

एंटर दबायेंगे
जिससे वर्तमान बिंदु 2 बिंदु क्रमांक 3 हो जाता है
ध्यान दें कि इनपुट टेक्स्ट नये रंग में आ गया है
इस टेक्स्ट पर माउस धुमाएँ
आप मैसेज देखेंगे
इंसर्टेड Sriranjani प्रविष्टि की तारीख और समय के साथ
इस प्रकार डॉक्युमेंट में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है
नाम कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के रूप में लिबरऑफिस के संस्थापन के समय दिए गए नाम के आधार पर प्रदान किया जाता है
पहली लाइन में एवेलेबल की वर्तनी को सही करें
आप सुधार पर ध्यान देंगे
पहले बिंदु को डिलीट करें इत कैन बीई इंस्टॉल्ड ओन अल्ल कम्प्यूटर्स विथआउट रिस्ट्रिक्शन ओर नीडिंग टो पे लाइसेंस फीस टो वेंडर्स
ध्यान दें कि विलोपन डिलीशन लाइन को वास्तव में डिलीट नहीं करता लेकिन इसे विलोपन के लिए सूचित लाइन के रूप में चिन्हित करता है
इस पर कर्सर धुमाएँ और हम मैसेज देखते हैं डिलीटेड Sriranjani विलोपन की तारीख और समय के साथ
इस तरह डॉक्युमेट में मौजूद टेक्स्ट को जोड़कर डिलीट करके या बदलाव करके डॉक्युमेंट में संसोधन किया जा सकता है
एक से अधिक व्यक्ति समान डॉक्युमेंट को संपादित कर सकते हैं
लिबरऑफिस राइटर एक समीक्षक के कार्य को दूसरे से अलग करके पाठक की मदद के लिए प्रत्येक संपादन को भिन्न रंग में दर्शाएगा
सहज ही संपादित टेक्स्ट पर माउस धुमाएँ समीक्षक का नाम प्रदर्शित होगा
डॉक्युमेंट को ओपन करके मैं इसे प्रदर्शित करने जा रहा हूँ जो मेरे सहकर्मी गुरू द्वारा पहले से ही संपादित किया गया है
टेक्स्ट फाइल डॉक्युमेंट government support for foss in indiaओडीटी को ओपन करें
इस डॉक्युमेंट में हम देख सकते हैं कि कई अनुवृद्धिएडिशन और विलोपन किये गये हैं
इस टेक्स्ट पर माउस धुमाकर मैसेज मिलता है कि अनुवृद्धि और विलोपन गुरू द्वारा किये गये हैं
सबसे नीचे एक बिंदु जोड़ें सीडीएसी एनआईसी nrc फॉस आरे इंस्टीट्यूशंस ओएफ गवर्नमेंट ओएफ इंडिया व्हिच डेवलप एंड प्रोमोट फॉस
हम देख सकते हैं कि इस प्रविष्टि का रंग गुरू द्वारा किये गये संपादन के रंग से भिन्न है
इस प्रविष्टि पर माउस धुमाकर मैसेज मिलता है Inserted श्रीरंजनी
इस प्रकार लेखक के पास वापस जाने से पहले एक से अधिक व्यक्ति समान डॉक्युमेंट का संपादन कर सकते हैं
इसे सेव किये बिना डॉक्युमेंट बंद करें
अब हम दिखायेंगे कि कैसे लेखक समीक्षक द्वारा किये गये बदलावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है
उसी डॉक्युमेंट में government support for foss in इंडिया मानते हैं कि मैं लेखक हूँ और मैं गुरू द्वारा किये गये संपादनों को स्वीकार या अस्वीकार करूँगा
बिंदु 2 पर जाएँ और डिलीट किये गये टेक्स्ट रीजन्स पर राइट क्लिक करें
तथा एक्सेप्ट चंगे चुनें
आप देखेंगे कि टेक्स्ट डिलीट हो गया है जिस बदलाव को समीक्षक ने सुझाया है
प्रविष्ट टेक्स्ट नीड्स पर राइट क्लिक करें और एक्सेप्ट चंगे चुनें
आप देखेंगे कि टेक्स्ट सामान्य हो गया है जिस बदलाव को समीक्षक ने सुझाया है
इस तरह से समीक्षक द्वारा सुझाये गये संपादन प्रविष्टि और डिलीशन्स दोनों लेखक द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं
बिंदु 1 पर जाएँ और डिलीट किये गये टेक्स्ट थे ओपनॉफिस डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड हस बीन नोटिफाइड अंडर थिस पॉलिसी पर राइट क्लिक करें और रिजेक्ट चंगे चुनें
यह टेक्स्ट को सामान्य करता है अर्थात डिलीट के लिए समीक्षक का सुझाव लेखक द्वारा अस्वीकार किया गया है
बिंदु 5 पर जाएँ और गवर्नमेंट स्कूल्स इन ठेसे स्टेट्स एंड इन ओरिसा कर्नाटक एंड तमिल नाडू लर्न लिनक्स पर राइट क्लिक करें और रिजेक्ट चंगे चुनें
यह समीक्षक द्वारा प्रविष्ट किये गये टेक्स्ट को डिलीट करता है
इसी तरह लेखक द्वारा प्रत्येक एडिशन और डिलीशन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है
अंततः बदलाव स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद हमें एडिट जीटीजीटी चेंजों पर जाना चाहिए तथा रेकॉर्ड और शो ऑप्शन्स को अनचेक करना चाहिए
जब अनचेक कर देते हैं तो कोई भी अन्य संपादन अलग से चिन्हित नहीं होगा
कृपया समीक्षक द्वारा दी गई सभी टिप्पणियों को समाविष्ट करने के लिए बदलावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद फाइल को सेव करने के लिए सुनिश्चित रहें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
एक डॉक्युमेंट ओपन करें और रेकॉर्ड चेंजों मोड में वर्तनी की गलतियों को सुधारें
मैंने इस नियत कार्य को यहाँ पहले ही तैयार कर दिया है
विडियो निम्न लिंक पर उपलब्ध है
जो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैन्ड्विड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें contact at स्पोकेन हाइपेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
धन्यवाद